इस चित्र में एक कंस्ट्रक्शन का कार्य करता हुआ दिखाया जा रहा है ऊपर लोहे के गर्डर वगैरा रखें हुए हैं।

पेट्रोल पंप के नीचे जमीन पर ब्लॉक्स बिछे हुए हैं और ट्यूबलाइट वगैरा जल रहे हैं।

इसमें एक बड़ी इमारत दिखाई दे रही है। इमारत के सामने कुछ ट्रक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

बोर्ड के ऊपर लोहे की रैलिंग्स वगैरा लगे दिखाई दे रही है नीचे दुकान है दुकान का एक शटर खुला हुआ है।

कई लोग दुर्गा माता जी के मंदिर के सामने खड़े हुए हैं उसके आगे नीचे स्त्री पुरुष महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे --

ये एक मंदिर का चित्र दिखाई दे रहा है मंदिर के सामने बोहोत सारे बैठक बाकड़ें पड़े हुए हैं।

एक तरफ चेयर्स लाल कलर की दिखाई दे रही हैं एक डेकोरेशन किया हुआ सीढ़ी जैसी दिखाई दे रही --

इस चित्र में अम ऊपर वेलकम टू टूरिज्म कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद साइन बोर्ड लगा हुआ है बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

उनके सामने दो लाइट के बड़े बड़े पोल्स दिखाई दे रहे हैं सामने खुला आसमान है चारों तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बाटा के ऊपर एम_एस सारीज लिखा हुआ है।

ये चित्र चर्च जैसा लग रहा है।

बहुत सारे लोग इसके सामने खड़े हुए हैं कुछ आदमी हैं बच्चे हैं महिलाएं हैं।

इस चित्र मे एक रूम का दृश्य दिखाई दे रहा है रूम मे विभिन्न प्रकार के सूचनाएं लिखा हुआ एक बहोत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

ये चित्र एक स्कूल जैसा दिखाई दे इसमें एक लंबी सी गैलरी है।

आदमी ने ब्लू रंग का टी शर्ट पहना हुआ पीछे पीठ पे बैग है।

एक महिला है पिंक कलर अ और ब्लू पेंट जैसा पहने पीठ पे वो भी बैग लिए हुए है प --

यह एक चित्र रेस्टोरेंट का दिखाई दे रहा है उसके सामने एक बहोत बोर्ड हुआ है रायल चाइनीज लिखा हुआ है।

यह एक शहर की घनी बस्ती का चित्र दिखाई दे रहा है विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं।

ये एक मकान का चित्र दिखाई दे रहा है। इस मकान की छत के ऊपर सेट पड़ा हुआ।

इस चित्र में विभिन्न प्रकार के हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

उसके नीचे एक पानी की टंकी ब्लैक कलर की दिखाई दे रहे। कुछ नारियल के पेड़ बड़े-बड़े दिखाई दे। एक टावर भी दिखाई दे रहा है।

हरी मिर्च लाल मिर्च फ्लावर्स वगेरा हैं सब मार्केट में कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

एक कैबिनेट के नीचे कुछ चप्पलें जैसी रखी हुई दिखाई दे रहे हैं और भी सामान रखा हुआ है।

दुकान के आगे कुछ ट्रक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बाई तरफ दूर कब कुछ वेटर दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक कैबिनेट है कैबिनेट में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी हुं--

टेबल के ऊपर कांच लगी हुई है पीछे एक लोहे की चेयर दिखाई दे रही है।

टेबल के ऊपर एक प्रिंटर जैसा दिखाई दे रहा है सामने भी एक चेयर है और एक डेस्क वगेरह दिखाई दे रही है।

ये एक चित्र ऐसा शहर का दिखाई दे रहा है कि जिसमें विभिन्न प्रकार की इमारतें दिखाई दे रही हैं।

बाई तरफ इमारते हैं एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है एक बहोत बड़ा पोल है फ्लैशलाइट जैसा दिखाई दे रहा है।